जहां बर्थडे का डेकोरेशन किया हुआ है।

उसके सारे पुर्जे अलग किए हुए हैं।

बाहर काफी काले रंग के ऑटो रिक्शा लगे हुए हैं।

तीनों व्यक्ति मे आई हेल्प यू के डेस्क के पास खड़े हैं।

पीछे एक भूरे रंग का दरवाजा है जो कि खुला है।

अब्दुल कलाम का पोस्टर है और साइड में एक और पोस्टर है।

बेंच भूरे रंग के हैं जिनके ऊपर बैग रखे हुए हैं।

वही उसके पीछे एक व्यक्ति है जो कि काले रंग का शर्ट और नीचे ब्लू रंग का जींस पहने और सर में उसने हेलमेट लगाए हुए हैं।

दृश्य में एक तीन मंजिला इमारत है जिसके सामने एक पक्का आंगन है।

ई स्टॉल के बाहर एक लाल रंग का बाल्टी रखा हुआ जिसके अंदर कचरा फेंका हुआ है।

इस दृश्य में एक घंटा घर है जिसमें हल्के भूरे और सफेद रंग का पेंट किया हुआ है।

दृश्य ऑफिस का है जिसकी दीवार हल्के गुलाबी रंग की है।

पीछे ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ पार्टीशन है और दो काले रंग के चेयर्स रखे हुए हैं।

स्कूल की दीवार सफेद रंग की है और उसमें नीले रंग के बॉर्डर्स बने हुए हैं।

दुकान के बाहर एक घड़ी लगी हुई है और एक मच्छर मारने वाला बैडमिंटन लटकाया हुआ है।

दुकान के कॉर्नर पर एक सी_सी_टी_वी लगा हुआ है और दो लाइट भी लगी हुई है दुकान के अंदर।

वहीं ऊपर में सफेद रंग की पेंट की हुई है।

दुकान में एक लाइट लगी हुई है जो कि जल रही है।

सबने एक जैसा कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं।

जमीन पर हरे रंग की कारपेट बिछी हुई है लड़कियों ने क्रीम कलर की चुन्नी और हरे रंग का और क्रीम कलर का घाघरा पहना हुआ है।

यह दृश्य एक मोबाइल शॉप का है जिसमें लकड़ी की शेल्फ बनी हुई है।

दुकान में पुताई सफेद रंग की की हुई है और खुले हुए दुकान के बाहर आइडिया लिखा हुआ टेप पीले रंग का चिपकाया हुआ है।

लाल और नीले रंग की पट्टियां बनी हुई हैं।

वही साइड में तीन चेयर हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है।

वहीं दुकान के बाहर एक स्कूटी खड़ी है।

इसकी दीवार सफेद हरे और भूरे रंग की है।